रैक मे हमे बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे की बहोत सारे पीले डब्बे रखे हुए नजर आ रहे है और हमे बहोत सारे अगरबत्ती के डब्बे रखे हुए नजर आ रहे है और हमे यहां पर बहोत सारे पकिट रखे हुए दिखाई दे रहे है जो की देखने मे बहोत अच्छे लग रहे हमे यहां पर बहोत सारे खाने की चीजे रखी हुइ नजर आ रही हैं।

पेड़ के हमें यहां पर एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही नदी में बहुत सारा पानी नजर आ रहा है और हमें दो बाइक दिखाई दे रही है एक बाइक का कलर हमे नीला दिखाई दे रहा है एक बाइक का कलर काला दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमें हेलमेट रखा हुआ नज़र आ रहा है।

और हमें वहां पे दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैजिसमे से एक आदमी ने सफ़ेद कलर की शर्ट और लुंगी पेहनी दिखाई दे रहे और उसके हाथ मे एक लकड़ी का डंडा दिखाई दे रहा है जो की जिससे की वो नाव चलाता हुआ नजर आ रहा है।

बहुत ही बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर हमे एक बहुत बड़ा कमरा दीवार दिखाई दे रही है दीवार के बाजू से हमे एक दीवा क- कमरा द- दरवाजा दिखाई दे रहा है दवाजा हमे कत्थई कलर का दिखाई दे रहा है।

--और हमें यहाँ कमरे की दीवार का कलर हमें यहाँ पर अ नीला दिखाई दे रहा है और हमें यहांँ पर बहुत ही बड़ा गेट दिखाई दे रहा है गेट की दीवार का कलर हमें यहाँ पर पीला और लाल दिखाई दे रहा है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

एक बहुत ही बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर हमे कागज लगा हुआ नज-- नज़र आ रहा है जो कि सफेद कलर का दिख रहा है उसके उपर हमे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

--और उसके पीछे हमें काटे वाला फावड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है उसके पीछे हमें एक बहुत ही बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जंगल मे हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक बहोत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही हैं नदी के आस-पास हमें बहोत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के ऊपर हमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं।